ये इस स्कूल दिख रहा है और अभी पूरा कम्पलीट नही हुआ है। अभी ये बना रहा है। जय मुहूर्त अ ब्लू कलर में लिखा है। वाइट से पेंट हुआ है।

पेंसिल इरेज़र सब कुछ यहाँ पे मिलता है ये शॉप --

बगीचा दिख रहा है। सामने पेड़ है खम्भा है और घर भी दिख रहा है पानी का भी व्यवस्था है और सब कुछ है यहाँ पे.

पिंक येलो में है और कार भी खड़ा है व्हाइट कार अ रेड कार ब्लैक कार --

बरगद का पेड़ है और मैंगो का पेड़ है सब कुछ दिख रहा है।

यहाँ पे दूकान है यहाँ पे सब जेंट्स अ टी-शर्ट हैं और जेंट्स --

यहाँ पे पेड़ यहाँ पे होटल है या स्कूल है यहाँ पे पेड़ पौधे है बड़े-बड़े पेड़ भी है छोटे-छोटे पेड़ यहाँ पे है ।

वाइट बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे गेट बहुत बड़ा गेट है लोखन का गेट हैऔर एक आदमी बाहर चल रहा है।

चार फ्लौर का है और यहाँ पे इसके अन्दर लगता है स्कूल है।

यहाँ पे पूरा सगमरमर का बनाया हुआ है और छत्र भी संगमरमर का खम्भा मोटा-मोटा संगमरमर का बना हुआ है अलमारी हैउसमें ।

मूर्ति यहाँ पे सिल्वर कलर दिख रहा है ।

घर पे ले के जाएँगे अपना बना के खाने के लिए यहाँ पे बहुत बदबू आती है मच्छी मार्केट में।

पत्र-वत्र यहाँ पे सब लोग बनाते रहते है ब्लू कलर का है ।

यहाँ पे घर बना रहा है और छत पड रहा है और सरिया सब पड़ा हुआ है। इसमें सिलमित का --

ब्लैक और चिति चिता पड़ा है। व्हाइट कलर में है और यह टाइल्स भी ब्लैक कलर और व्हाइट भी है। यहाँ पे --